काफी बड़ा मछली मार्केट है | यह पर देख पा रहे हैं | बहोत सारे मछली के छोटे छोटे स्टाल है । यहाँ पे --

यहाँ पे फादर हैं वो उनके वो अपनी म जो उपदेश वगैरा दे रहे हैं बाइबल वगैरा पढ़के वो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे।

सुबह-सुबह के समय की तस्वीरें देख पा रहें हैं। जहाँ पे हम देख सकते हैं। कि बड़े से तालाब के किनारे ये नदी शायद है। जिसके किनारे काफी सारी जो लेडीज़ हैं। वो इकठ्ठा हो रखीं हैं।